इस फोटो में मुझे कुछ महिलाएं दिखाई दे रहीं हैं।

इस फोटो मे मुझे एक बॉउंड्री दिखाई दे रही है।